और फेंसिंग भी लगाया हुआ है।

रूम का कलर येलो एंड व्हाइट पिंक ।

कुछ फ्लेक्स भी दिखाई दे रहा है।

और यहां पे कुछ ट्रीस भी दिखाई दे रहा है।

और कुछ ट्रीज भी हैं।

एक बड़ा सा आईना भी है।

ये एक बस स्टेशन है।

कुछ चेयर भी लगाया हुआ है।

और एक टी_वी भी है।

टेबल का कलर है ब्राउन ।

एक फोन पकड़ा हुआ है।

और ये मंदिर में अलग अलग कलर दिखाई दे रहा है।

ब्लैक कलर का प्लेट दिखाई दे रहा है।